यहां बहोत सारे लोग भी नजर आ रहे है यहां बहुत अच्छा सामान मिल रहा --

यहां बहोत अच्छी घूमने की जगह भी दिखाई दे रही ये बहोत शानदार लोकेशन पर --

दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं।

जानते हैं ये बहुत शानदार लोकेशन पर एक बस स्टैंड --

यहां लेडिस के बहुत अच्छे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

है यहां बहोत अच्छी लोकेशन भी दिखाई दे रही है।

अच्छा समान मिलता है यहां बहोत अच्छी लोकेशन भी दिखाई दे रही है।

ची लोकेशन पर दिखाई दे रही है यहां बहोत अच्छे फूल मिलते हैं।

अच्छी बैठने की जगह दिखाई दे रही है यहां हर चीज बहुत--

लोकेशन पर दिखाई दे रहा है यहां बहुत अच्छा रास्ता --

ये एक बहोत अच्छा मार्केट दिखाई दे रहा है ये एक --

बहुत अच्छी दुकान दिखाई दे रही है यहां बहुत अच्छे सामान --

यहां बहुत अच्छी सुविधाये भी है यहां बहुत अच्छा पानी भी है।